ब्रक्ष रखा है।

लिखा हुआ है।

और लाइटे जल रही हैं।

आसपास एक बॉर्डर बाउंड्री सी दिख रही है। जैसे मंदिर बना हुआ है।

लो अ एक तार गए हुए है बिजली के।

अह एक लड़का है जो शेविंग करा रहा है।

इस पिक्चर में एक आसमान दिख रहा हैं जो स्काई ब्लू कलर का है।

रूम है। रूम में व्हाइट कलर का पेंट है।

एं छत है छत में वाइट कलर का पेंट है। लाइटें जल रहीं हैं उधर।

वहाँ पर एक ब्रक्ष भी लगा हुआ है।

अ घर भी बने हुए। बिल्डिंगे भी हैं। लोहे की तार दिख रही --

और यहा पर जो बर्फबारी होती है वहा पर बर्फ दिख रहा है।